हमें इस तस्वीर के अंदर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और पेट्रोल पंप से दूर हमें एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

और हमें अ एक कपड़ा भी टंगा नजर आ रहा है उसमें--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

और हमें हरे भरे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारी कारें हैं जो खड़ी हुई हैं एक मैदान में--

हरे और सफेद और ऑरेंज रंग के बलून लगे हुए हैं पूरी दीवार और--

बोर्ड के ऊपर दुकान के फ्लैक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पलंग लगे हुए हैं और उसके ऊपर हमें लेटे हुए लोग नजर आ रहे हैं।

और बहुत सारे हमें स्टूल टेबल कुर्सी और और चीजें हमें पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

और आस पास हमें हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हरियाली दिखाई दे रही है।

और थोड़ी सी जगह हमें मैदान जैसी खाली भी नजर आ रही है।

एक आदमी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पानी भरा हुआ एक तालाब के अंदर दिखाई दे रहा है।

और एक नर्स के साथ एक आदमी खड़ा हुआ है।

और हमें एक बलून बच्चा पकड़ा हुआ है रंगीन बलून है पीले गुलाबी--

हमें एक आदमी सब्जियों के ढेर के बीच बैठा दिखाई दे रहा है।

हमें एक सूनी सड़क दिखाई दे रही है।

एक औरत और एक लड़का साइकिल पर दिखाई दे रहा है।